जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ बहुत --

जैसा। कि आप देख सकते हैं यह एक हॉस्पिटल है

जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यहां एक कूलर रखा है।

आप यहां देख सकते हैं यहां बहुत सारे जिम के--

जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यह एक--

जैसा कि आप यहांदेख सकते हैं यह एक--

जैसा कि आप जानते हैं यहां बहुत सारे लोग हैं ।

बहुत सारे लोग हैं।

जैसा कि आप जानते हैं।

जैसा कि आप जानते है याह एक काँच लगा है।

जैसा कि आप जानते हैं यहां पर एक घर है।